जिनका रंग हरा है। मैदान के अंदर एक बड़ा सा वाहन भी खड़ा है।

टेबील के ऊपर एक पर्दा बिछा हुआ है जो सफेद रंग का है।